लाइट चल रही है हरी कलर की कहां से और रात का वक्त से आसमान काला हो चुका है।

और उसके पीछे पेड़ लगा है और छत के ऊपर दीवार पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और मकान का कलर सफेद और पिंक कलर का हैं उसमें खिड़की है ऊपर जाने के लिए जीने भी --